जिसके ऊपर हरे हरे रंग के छोटे--

ये फुट वेयर की शॉप है।

दृश्य हमें किसी मार्केट का दिखाया जा रहा है।

लगी हुई नजर आ रही है।

ब्लैक कलर की कार्स पार्क की हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य हमें कोई फंक्शन का दिखाई दे रहा है।

जो कि फूलों से बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में हमें एक घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक स्कूल दिखाया जा रहा--

इस दृश्य में हमे एक लकड़ी का बना हुआ--

गेट खोल कर अंदर जा रहे हैं।

सारी पतंगे दिखाई दे रही हैं।

इसपे एक स्टेज बनी हुई हैं।

दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनी हुई हैं।

लाल रंग से बनी हुई है।

यह दरसल मे एक शूटिंग गेम खेल रहे हैं।

यह दृश्य हमें रात का दिखाया जा रहा है।

जिस पर सफेद रंग किया हुआ है।

इस दृश्य में हमें एक रेड़ी दिखाई दे रही है।

इसपे एक स्टेज भी बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत सुंदर पैलेस भी बना हुआ है।

और हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे--